एक मंदिर का गेट है जिसक पे कुछ लिखा हुआ है।

लिखा हुआ क्लियर नहीं दिख रहा है लेकिन मंदिर काफी अच्छा है। पीले कलर से --

एक सफेद कलर की मूर्ति है उसके पीछे पीले कलर की मूर्ति हैं और बहुत सारी सीनरी लगी हुई हैं।

एक बोर्ड हे वाईट कलर का जिस पे होली साइन बना है क्रिस्चन का लिखी है | बेलिवर्स इस ट्रांसजर्ट | एक गेट है लोहे का |

ब्लैक कलर का पीछे एक कमरा है जिसका एक छोटा सा गेट है उसमें खिड़की भी लगी है इधर उधर फुलवारी लगी है।

चर्च है। जिसके आगे गेट पे कई सारे लोग खड़े हैं। स्टेर्स हैं। एक सीढी बराबर मे रखी हुई है।

कई सारी कुर्सियाँ रखी हुई है जिनपे लाल सनमाइका लगी हुई है।

बाहर वाइट कलर का पेंट हो रखा है | सिलिंग काफी अच्छी है बाहर ट्यूब लाइट्स लगी हुई है खिड़किया लगी हुई है हर रूम में |

के नीचे कई सारे लोग बैठे हुए हैं। दो कई सारे रूम्स हैं। स्टेयर्स हैं। सीढ़ियाँ बोलते है।

लेडीज कुछ कर रही हैं। एक अ मेज हैं उसके बराबर में दो बेड पड़े हैं। रूम मे टाइल्स लगी हैं।

एक कैफे है जहां आगे एक दीवाल पर हैप्पी बड्डे लिखा है कई सारे बलूनस लगे है ए.सी. है। फैन्स --

कई सारी गाड़ियां खड़ी है। कई सारे लोग हैं अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं।